एक व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाता हुआ नज़र आ रहा है | सारे लोग उससे डिस्कस कर रहे हैं ।

यह फोटो एक स्कूल के हॉल की है जहां सारे बच्चों ने अपने चार्ट पेपर पे कुछ न कुछ बनाते और काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

खून के चेक करने से हमे आधी बीमारियों का पता चल जाता है

यह फोटो अंधेरे के समय की है जहाँ एक-दो गाड़ियाँ में बल्ब जलती हुई जलती हुई दिखाई दे रहीं हैं।

काम होता हुआ दिखाई दे रहा है यहां मसाले बन रहे हैं और कही कही पे ईट गिट्टी है।

यह फोटो सड़क की है। सड़क किनारे ढेर सारे बिल्डिंग्स और दुकानें लगी हुई हैं। एक दुकान होटल रेगिसी की है।

इस फोटो में हमें एक ऑफिस नुमा एक कमरा दिखाई दे रहा है। जहाँ सामने टेबल और एक कुर्सी रखी हुई है।